छोटा सा तालाब है जिसमें से पानी निकल रहा है और कुछ पौधे भी लगे हुए है और यह पौधों में लाइट लगी--

यह एक पुराना पुल है जो जो की बहुत पुराना लग रहा है जिसकी रंग उड़ चुकी है और --

यह एक बहुत बड़ा मैदान है। मैदान के चारों ओर दिवाल हैं। दीवाल पर भी कुछ लिखा हुआ है।

यहां एक दुकान है जिसके अंदर बहुत सारे क्रिकेट के सामान रखे हुआ है कुछ चौकियाँ रखी हुई है।